जैसा की यहाँ पर देख पा रही हु यहाँ एक दुकान है यहाँ पर भवानी लौंडरी लिखा हुआ है।

और दुकान के एक तरफ शुभ और एक तरफ लाभ लिखा हुआ है दुकान में पर्दा भी लगा हुआ है।

पूल के नीचे बहती हुई नदी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर ये होटल टेंपल ट्री लिखा हुआ हैं।

हम यहाँ पर देख पा रहै हैं यह एक रेलवे प्लेटफॉर्म है।

इसमें मेजे लगी हुई है मेंज़ो में बाल्टियां डब्बे रखे हुए है।

चेयर बैठे हुए है दो लड़किया खड़ी हुई है लाल रंग की कुर्सिया है।

जैसे की हम देख पा रहै है यह एक मेडिकल स्टोर है यहाँ पर देखिये लमारी में बहुत सारी दवाईयां रख --

इसके ऊपर पेड़ की परछाई पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है।

इस दृश्य में हम देख पा रहै है यहाँ दुकान है जिस पर की बस्तर डेरी फार्म लिखा हुआ हैं।

और ये गाय खड़ी हुई है जिसका बच्चा दूध पिता हुआ दिख रही है।

बहुत सारी मछलीयाँ बिकती हुई दिख रही है बहुत सारे लोग खड़े है।

बड़े-बड़े से पेड़ भी लगे हुए है और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर व्याम शाला--

ओपेन गेम लिखा हुआ हैं।

चटाई बिछी हुई है और यहाँ पर बहुत सारे आदमी और औरते--

इस दृश्य में देख पा रहे हैं ये एक बोहोत हरा-भरा सा दृश्य हैं जिसमे की बिच में एक तालाब सा हैं।